सावलोन दिखाई दे रहा है और क्रीम क्रीम भी दिखाई दे रही है मेहंदी के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं।

और सीमेंट का एक खंबा भी दिखाई दे रहा है झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं और लोहे के बहोत बड़े--

दरवाजे में कांच लगा हुआ है ऊपर--

और स्कूटर भी दिखाई दे रहे हैं।

चिप चोप भी दिखाई दे रहा है और यहां पर डॉगी के बिस्किट भी दिखाई दे रहे हैं।

छत पे बहुत सारी लाइट्स भी दि--

और ये मंदिर के ऊपर एक छोटा सा झंडा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर गाड़ी दिखाई दे रहीं हैं आसमान दिखाई दे रहा हैं।

फर्श भी दिखाई दे रहा है।

हैं और यहां पर लोहे का एक बहोत बड़ा अ सामान भी दिखाई दे रहा हैं।

यह एक स्कल्पचर्स दिखाई दे रहे हैं इस येह अलग अलग कलर्स में हैं।

और यहां पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है और गत्ते के डिब्बे भी दिखाई दे रहें--

यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं।